ये जो हम तस्वीर देख पा रहे है यहाँ पे एक मैंप लगा हुआ है और मैंप लगा हुआ है। जो ये रूम बना हुआ है। उसमे ए_सी भी है और इसका जो कुछ --

ये जो हम ब्रिज देख पा रहे हैं ये बहोत ही ऊँचा है और ये सिमेंट के खम्भों पे टिका है जो बहोत ही मजबूत के से बनाया गया है।

और यहाँ पे जो बांध हम देख रहे हैं। इसमें जल बहुत ही दिख रहा है और इसके पुल के ऊपर लोहे की ग्रिल्स लगी हुई है जो बहुत ही मजबूत --

और ब्रिज की जो गेल्स है वो लोहे की हैं और नीचे खम्भे जो हैं वो सीमेंटेड हैं जो बहोत मजबूत --

ये जो हम गार्डन देख रहे हैं ये एक स्कूल का है स्कूल नहीं मीन्स कॉलेज का है ये इंस्टीटूट कॉलेज है और या --

औ इससे थोड़ी दूर पे कम से कम दस कदम की दुरी पे एक बाइक भी खड़ी है और यहाँ काफी सुनसान है।

हम जो ये तस्वीर देख पा रहे हैं ये किसी लाइब्रेरी की लग रही है जहाँ पे कुछ लोग कंप्यूटर से काम कर रहे हैं तो कुछ लोग बैठ के पढाई वढ़ाई कर रहे हैं।